यह किसी हॉस्पिटल का फोटो है जो चार पांच महले का है जिसे बहुत सुन्दर तरीके से बनाया गया है।

यह फ़ोटो किसी मैकेनिक की हैजो कन्स्ट्रक्शन एरिया में काम करता हुआ दिखाई दे रहा हैजिसने सारे ड्रेस कोर्ट पहने हुए हैं।

यह किसी फल विक्रेता की दुकान है जिन्हें सारे फलों को एक अच्छी तरह तरीके से सजा कर रखा हुआ गया है।